और एक जंगल भी दिखाई दे रहे है जंगल मे बहुत सारे पेड़ दि--

मंदिर पीछे बिल्डिंग है ये बिल्डिंग गेरू कलर से कलर किया गया है।

यह जिम क्लासेस में यहाँ पर कुछ मशीन हैं जो लाल कलर की हैं और ब्लैक कलर की हैं।

लगभग बीस से पच्चीस कुर्सियां रखी गई है।

यह एक लॉन्ड्री लैब है।

और बिल्डिंग से सामने यहाँ हाइवे रोड है हाइवे रोड के पास --